शोरूम है यामहा लिखा है गिटार है पियानो है कुर्सिये है लाइटे है ग्रीन टाइल्स है लाइटे है।

म्युझीयम है एसी है लाइटे है खिड़किये है छत है टाइल्स है शोकेस है इसमे बहुत सारा सामान है।

बहुत बड़ा पहाड़ है हरियाली है पत्थर है आसमान नीचे भी पहाड़ है हरीयाली है बड़े बड़े से पोध पेड़ है छोटे छोटे पौंधे है घास है।